यह विजय पुस्तक भंडार है | जय माता --.

यहाँ नदी है नदी ब मे पानी है। पानी बहुत तेज है नदी के किनारे-किनारे पौधा है एक कुसुम का पेड़ है --

कई तरह की मछली है छोटा भी मछली है बड़ा भी मछली है।

नदी है बहुत मस्त लग रहा है देखने में आसमान दिख रहा है।

मरांडी कलर का दिख रहा है काला कलर का दिख रहा है देखने में बहुत अच्छा लग रहा हैं।

यहाँ पे बहुत सारे मुस्लमान लोग बेठे हुए हैं ये लोग बड़ा-बड़ा दाढ़ी बढ़ायें हुए हैं टोपी पहने हुए हैं सूट पहने हुए हैं कुर्ता-पजामा पहने हुए हैं हाथ में छतरी लिए हुए हैं इसमें बहुत बड़ा मकान है दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है ।